यहां पर टाइल्स के ऊपर कांच रखा हुआ है। यहां पर एक फोर व्हीलर नजर आ रही है जो कि रेड कलर की है।

यहां पर बाहर की और काफी सारी बाइके खड़ी हुई है जो की अलग-अलग कलर की है जैसे कि ब्लैक कलर की और रेड कलर की बाइको में जो है वह की मिरर लगा है।

यहाँ पर बहुत सारे लाल कलर के पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ पर चेयर लगे हुए हैं। यहाँ पर ए.सी लगा हुआ है। ए.सी और शेन व्हाइट कलर का है और यहाँ पर बालूनस भी हैं।

यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत नजर आ रही है जो की पिंक कलर से पेंट की गई है उसके बाहर एक खुला हुआ मैदान है | मैदान में हरी हरी घास है और बहोत सारे पेंड़ पौधे उसमें लगे हुए हैं।

और यह पे सभी लोगों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँं पे बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं। ऊपर आसमान है।

यहाँ पर एक सड़क है और यहाँ पे बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं व्हाइट कलर की। ऊपर आसमान है कलर जिसका ब्लैक है। यहाँ पे बहोत सारे लोग चहल कदमी करते हुए नजर आ रहे हैं।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

यहाँ पे टेबलों के ऊपर काँच के ग्लास रखे हुए हैं और यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं | यहाँ पे लाइटिंग है छतो के ऊपर और यहाँ पे काँच का शीशा लगा हुआ है।

अलग अलग कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे अ चलने के लिए एक रास्ता भी है।

यहाँ पर सुबह का वक्त है और यहाँ पर एक झील है। जिसमे की बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पानी का कलर ब्लू नजर आ रहा है। उसके आस पास बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

पानी के तट पे कुछ लोग बेठे हुए हैं और कुछ लोग पानी के अंदर हैं जो कि नहा रहे हैं। ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है और कुछ बादल है।

यहाँ पर एक नदी है और यहाँ पे बोहोत सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं।